इसमें आपको एक जो है ट्रेन का डब्बा दिखाई दे रहा है जिसमें ये माल गाड़ी है और ये माल गाड़ी में आपको डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। पीछे आप देख सकते हो कितने इसमें डिब्बे दिख रहे हैं।

इसमें आप देखिए कि कमरा है | कमरे में आपको नीचे इसमे डेस्क दिख रही है डेस्क के अलावा इसमें आपको ट्यूबलाइट दिख रही है ट्यूबलाइट के अलावा इसमें देखिये कि आपको दीवार पे जो है फ़ोटो दिख जाएगी।

नीचे आपको एक बाल्टी दिखाई दे रही है बाल्टी के बगल में एक कैरट है जो की ऑरेंज कलर का है इसमें देख सकते हैं कहीं आपको फ्रूट आपको वेजिटेबल्स के अलावा आप इसमें फ्रूट्स दिख रहे हैं।